कॉफी भी रखा हुआ है ऊपर मैं एक पोस्टर भी लगाया हुआ है और एक बल्ब भी है छत भी है दीवाल का रंग नीला है और एक कार्टून --

यहां पर दो मोटरसाइकिल है और दोनों मोटरसाइकिल में शीशा देखने को मिल रहा है उ --

देखने पर मिल रहा है की यहां एक नदी है और नदी के अगल पास में बहुत पहाड़ देखने को मिल रहा है। बहुत सारा पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहा है।